इसका नाम होटल आर्शीवाद रेस्ट हाउस है।

जंगली जानवरों के देखभाल के लिए यह बनाया गया है।

ई छोटे बच्चों के लिए साइकिल उपलब्ध दिखाई पड़ रहा है।

अंदर कई सारे कुर्सियां लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हॉल काफी बड़ा लगता है।

यह एक जंगल नजर आ रहा है जो की काफी सुनसान है।

जहां पे एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जो की लाल कहीं काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

जिसका नाम चंद्रा मार्बल्स है।

सीढ़ी से उतर रहा है।

जो कि एक हॉस्पिटल लगता है।